एक बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है और सामने की तरफ कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही हैं और स्कूटी भी दिख रही है।

बाउंड्री बनी हुई दिखाई दे रही है। बाउंड्री पर पेंटिंग बनी हुई है मोर की पेंटिंग दिखाई दे रही।